यहाँ सामने की ओर एक आनंद श्री कॉम्पलेस दिखाई दे रहा है जहां अंदर की ओर लाइट्स भी जल रही है।

--सामने ये की-इ-इ ओर कांच दिखाई दे रहा है।